यहां जीप गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही हैं बस भी खड़ी दिखाई दे रही है लाइट के खम्बे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ हरा भरा-भी दिखाई दे रहा है बहुत सारी जगह भी --

स्टोरी यहा पे बहुत बड़े मंदिर बने दिखायी दे रहे है बहुत सारी जगह भी दिखायी दे रही है।

इस इमेज में रेल के पाते दिखाई दे रहे है इस इमेज में प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

उसमें एक टेंट भी तना हुआ है और सारा मैदान पड़ा हुआ है उसमें मटकी भी ठेला पर रखी हुई है।

पार्क रात का समय है बहुत पार्क भी दिखाई दे रही है।